एक पानी का फाउंटेन दिखाई दे रहा है जिस के पीछे एक लाईट चमकती हुई दिखाई दे रही है। फाउंटेन पर हरा रंग दिखाई दे रहा है।

एक बहुत ही सुंदर इस्टेज दिखाई दे रहा है जिसपर एक बैठने की चेअर लगी हुई है।

लाईट दिखाई दे रही है एक झुला लगा हुआ है जिसपर एक आदमी बैठा है हरी शर्ट पहन कर लोग दिखाई दे रहे है।

खेत दिखाई दे रहा है जिस पर फसल लगी हुई है पीछे खंबा दिखाई दे रहा है।

एक दीवार दिखाई दे रही है जिस पर एक आदमी सीडी नसेनी पर बैठा हुआ दिख रहा है एक आदमी नसेनी को पकड़े हुए है और एक आदमी--